और गाड़ियां भी खड़ी की गई है।

और एक पोल भी खड़ा है और उस थोड़े से पेड़ भी--

लोग शॉपिंग करने भी आए हुए हैं।

और एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो फोन सुन रहा है।

यह फोटो दो लड़के का और एक डॉगी का है।

सारा डॉगी कैसे अराम से सोया हुआ है।

और साथ में आसमान में बादल भी छाए हुए हैं।

औस स साइड में एक दुकान भी दिख रही है।

यह फोटो एक रास्ते की है।

साथ में इसमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।